यहां पे डॉग नजर आ रहा है यहां पे डॉग को कहीं पे बांध दिया है यहां पर पेड़ पौधा नजर आ रहा है यहां पे लोहा का गेट नजर आ रहा है।

--कार में नंबर लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है रेड कलर का लाइट है।